ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है। जींस पेंट पहना है बेल्ट लगाया हुआ है सामने देख रहा है ऊपर बल्ब लगा है पंखा लगा है ऊपर सफेद रंग पुता है अगल बगल आसमानी रंग संतरे रंग पुता हुआ हैं।

आदमी के ऊपर बहोत सारे बाल गिरे है खुर्सी गद्दे वाला है निचे हुरी मिटटी है जो आदमी काट रहां है उसने लाल रंग अह काले रंग करीबन पहना हुआ है काला टीशर्ट पहना हुआ है पंखा छोटा लग रहा हैं।

तराजू रखा हुआ है केरेट में भी कुछ मछलियां इधर उधर छोटी बड़ी बहोत बेकार दिख रही है कुछ लोग खड़े हुए है खरीदने के लिए जीन्स पहने हुए हैं नीले रंग की लुंगी पहनी हुई है।

गले में सांप ऊपर चन्द्रमा त्रिशूल डमरू रखे हुए हैं पंडित हैं बहुत सारे जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए बनियान पहने हुए पंडित हैऊपर ला-लाइट लगी--

बांस की लकड़ियां लगाई गई है पीली-पीली गुलाबी- गुलाबी फूली हुई है पपीते का पत्ता एकठो पीला- पीला है नीचे हरी घास उगी हुई है आसमान सफ़ेद रंग का दिख रहा है ।

बीच से रास्ता है कुछ नार वाले पेड़ है मीठी नीम की पेड़ है यू सूखे पेड़ भी है कुछ--

पेड़-पौधे हरे-भरे दिख रहे है और आसमान पर्पल रंग की दिख रही है सफेद आसमानी रंग की बगल में आम के पेड़ है जिसमे पत्तिया बहुत घनी है।

पहाड़ पर बड़ा सा पथर रखा है उसमे हरी घास उगी हुई हैभूरी-भूरी कलर की रास्ते है आसमान में काहिरा दिख रहा हैपर्पल रंग दिख रहा हैकही पे सफेद रंग और बगल-बगल में पानी भरी हुई बहुत दूर-दूर तक।

पानी भरी हुई पहाड़ है सफेद रंग कोहिरा है यह चित्र बहुत अच्छा दिख रहा है बगल में एक पेड़ दिख रहा है।